ट्रैक्टर के सामने एक मकान और दुकान बना--

और सामने एक छोटी सी गाड़ी भी दिख रही जो खिलौने--

दिख रहा है एक आदमी स्कूटी से जा रहा है एक रिक्शा एक मोटरसाइकिल तीन चार लोग --

ये एक दुकान है मेडिकल की दुकान है यहां एक--

ये एक दुकान है जिसमें हर तरह की तेल दिख--

ये एक दुकान हैं जिसमें बहोत कलर के चश्मे--

स्कूली टीचर भी दिख रहे हैं और स्कूली बस भी खड़ी हुई--